हमे एक रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते मे टाइल्स लगे हुए है ऑरेंज रेड कलर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

हमे यहा पर बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है। जंगल दिखाई दे रहा है। हमे यहा पे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। हमे यहा पर ईट दिख रही है।

हमे बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है हमे यहा पर हरी-हरी दुभा दिखाई दे रही है हमे बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है साथ मे लोग भी दिखाई दे रही है हमे यहा पर --